एक बिल्डिंग बनी हुई हैं और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे आसमान दिखाई दे रहा हैं और बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं ग्रीन घास--

यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे है जा रहे है कुछ अंकल है कुछ आंटी है कुछ बच्चे भी है सब बैग टाँगे हुए है हाथ में बोटल रखी हुई है यहाँ पे कुछ चेयर रखी हुई है।

आसमान दिखाई दे रहा है यहाँ पे खंबे लगे हुएखंभे में बहुत सारी डोरिया लगी हुई है रोड दिखाई दे रहा है और बहोत सा कुछ छोटे पेड़ है कुछ बड़े पेड़ है।

आसमान दिखाई दे रहा है नदी के ओ साइड पहाड़ी दिखाई दे रहे हैं दुधली दुधली और इस बार कुछ मिट्टी टाइप की दिखाई दे रही हैं।

एक अ गैरेज अ टाइप का है एक अ ट्रक खड़ा है ट्रक से में अंदर अंकल है एक अंकल बाहर है।